जो अपार्टमेंट का दृश्य है। देख सकते हैं कितना बड़ा अपार्टमेंट है। नीचे पार्क --

ते अहं पार्क है|

और आप देख सकते हैं लोग यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं।

अपने घर जाए।